यह एक जूस की दुकान है जिसमें काफी सारे फल रखे हुए हैं।

इसमें चार पांच बल एल_ई_डी बल्ब लगे हुए हैं।

यह एक कार है जिस पे लिखा है चालक वाहन चलाना सीख रहा है।

और सामने एक हरे कलर का पंखा लगा हुआ है।

और फिर दीवार में कुछ छोटे छोटे और डिजाइन लगे हैं।